मोबाइल शॉप है बहुत सारे अह किताबें रखे हुए हैं साड़ी साड़ी और शॉप दिखाई दे रहा है मेहंदी दिखाई दे रही है।